सामने दो कार दिखाई दे रही है कार का कलर सफेद है।

सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर सफेद है वहां एक बोर्ड भी दिखाई दे रही है जिसका कलर नीला है।

यहां एक मंदिर दिखाई दे रही है।

एक ए_सी है ए_सी का कलर सफेद है।

यहां बहुत सारी पटरी दिखाई दे रही है और बहुत सारे वायरिंगस है।